एक रैक मे कमला रीमू हेय एक मे अनार है एक मे सेब है यहां तरह-तरह के फल है।

यह पर छोटे-छोटे घर भी हैं ।

एक लड़का एक टेबुल पर बैठा हुआ है ये काफी भीड़ --